यह एक इंसान है यहाँ एक टाइप दिख रहा है बहुत सुन्दर बहुत खुबसूरत यह घर वर सब दिख रहे है।

बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत है बहुत सारे पेड़ है बहुत सारे पहाड़ हैं बहुत सारे आदमी हैं पते-वते सब हैं।